यह जो बिल्डिंग है उसमें कांच की विंडो है जो आप देख पा रहे होंगे जो बहुत ही अच्छी लग रही है।

यह आप देख रहे होंगे एक बहुत ही सुंदर वॉटर पार्क है जिसके साइड में पेड़-पौधे है।

और एक साइड में बाइक और उनके साथ में कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक आगे की साइड देख रहा है।

आप देख पा रहे होंगे एक दुकान है।